यहां पर सफेदा गोल्डन कलर की लाइट है कले रंग की--

काले रंग की खिड़की है सफेद रंग का दरवाजा है सफेद रंग की लाइट है कॉफी कलर की दीवारें हैं काले रंग की खिड़की है।

हरे रंग की झाड़ है सफेद कलर की मिट्टी है।